ये देखने में कुछ पुल सा लग रहा है जो कोई पुल बना रहा है। अब देखने --

पौधे जिसमें से अभी ये इनमे पानी देंगे खाद देंगे तो ये बड़े होंगे |

न् जिसमें ईन पेड़ो में फल भी लगते हैं। और --

पटाखों में एक और भी पाई जाती है।

आकर खेल सकते हैं। यह आपको ह देखने में बहुत मज़ा आएगा।